बाहर में कुछ लोगों को बैठा हुआ देख पा रहे हैं वहीं बाहर हमें एक बाइक भी रखी दिखाई दे रही --

वही हमें एक चिकत्सक इसका इलाज करते हुए दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पांव में चोट लगी है चिकित्सक इसके पांव को देख रहे है।

यह एक हवाई अड्डे का लग रहा है यहाँ पर हमें एक ए.टी.एम. रूम दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर रखी हुई देख पा रहे हैं।

दीवार पे हमे एक टी.वी. भी लगा हुआ नजर आ रहा है साथ ही हम कुछ सूचनाएं भी वहां पे चिपकी हुई देख पा रहे है।

हमें यह गाड़ी सफेद रंग की नजर आ रही है वही हम अंदर में कई सारे सीट देख पा रहे है ।

इसके शीशे भी हमें काफी बड़े-बड़े नजर आ रहे है देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें ए_सी भी चलती होगी यह दृश्य अच्छा लग रहा है।